यहाँं पर स्टेज जैसी एक जगह पर छे मु मूर्तियाँ जैसे इंसान बैठे हुए हैं। वो एक वादयन्त्र उनके हाथ --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पीछे एक गेट है उसके ऊपर एक पोस्टर चिपका हुआ है जो लउंड्री के बारे में। इसमें सारी सुविधा दी गयी है। ये ब्लैक और वाइट कलर से कुछ प्रिंट किया गया है।

जे फोटो मे जे एक कॅम्पस जैसा दिखाई दे रहा है। जिसमे लोग इधर आ आते आ जा रहै है और साइड पे कुछ टपरे टाइप की छोटी मोटी दुकाने लगी हुई है।

और हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पीछे वाइट सी मल्टी बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। सनराइज का बो माहोल सनराइज का जो दृश्य है बहोत ही अच्छा लग रहा है और पीछे कुछ पा पक्षी दिखाई दे रहे --

ये फोटो किसी नदी का दिखाई दे रहा है इसमें साइड पे बहुत सारी हरी भरी पेड़ पौधे हैं और पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक उपरी किनारे से निचले किनारे पर है जैसे कोई झरने सा है।

एक इंसान एक आदमी कही जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साइड मे बिल्कुल अंधेरा सा है और ये शाम का टाइम है |

चल रही है ये वाला ट्रैक अभी खाली है लेकिन शायद ट्रेन आ रही है और दूसरे वाले ट्रैक पर ऑरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई है |

जहाँ पर झूले लगे हुए है।